और जिसमें की कुछ टेबल कुर्सियां लगी है ऑफिस वर्क के लिए।

ये एक दुकान का सीन है। जिसका नाम है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ।

यहाँ पे मस्जित दिख रही है और आजू-बाजु में कुछ घर बने हुए भी दिख रहे हैं।

और कुछ से रेकों में कपड़े भी जमे हैं जो बाकि है इस्त्री करने के लिए और कुछ टेबल पे भी रखे हुए हैं।

हरी मिर्ची हुई खीरा हुआ शिमला मिर्ची हुई बिलकी हुई बैंगन हुए टमाटर हुए।

कुछ सामान लेने के लिए भी खड़ा हुआ है और कोई सामान ले रहा है।

बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदी में केंद्रा बैंक और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है केंद्रा बैंक ।

ये एक पार्क का सीन हैं। ये जिसमें झूले लगें हुए हैं और --

यहाँ आदमी भी उपलब्ध हैं। पंखे लगें हुए हैं कांच लगें हुए हैं। यहाँ है व्यवस्था हैं।

रखे हुए हैं नीले कलर के।